जिसपे भी बहोत सारे कलर की पेंटिंग रखी हुई है पीछे एक दीवाल है जो येलो कलर से पुती हुई है और यहाँ पर एक पट्टा भी दिख रहा है।

लड़की नदी में है बहुत-बहुत दूर तक नदी दिखाई दे रही है और इससे देख कर ऐसा लग रहा है कोई स डैम हो।

यहाँ पर एक हमें मतलब एक प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं हवाई जहाज़ हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है।

गिटार यहाॅं पर भी रखी हुई है और यहाँ पर ढोल वगैरा बैंड बाजे भी सब रखे हुए हैं और एक अंकल उसमें ऊपर की तरफ देख रहे हैं।

जो रेड कलर की है और माइक ब्लैक कलर का है और आस-पास ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है सब ब्लर ही दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है और शायद ये यहाँ पर फ्लोवर रखे हुए हैं बहोत सारे यहाँ पर बहोत से लोग यहाँ पर --

इ यहां पर मतलब कोई बैठा हुआ है जिसके बाल ही बाल देखाई गए हैं